किस कंपनी का है ये तो नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन पेट्रोल पंप है।

और एक बिल्डिंग रेड कलर की है।

कंक्रीट की सड़क नजर आ रही है।

सड़क के दोनों ओर उजली पट्टी दिखाई पड़ रही है।

पेट्रोल पंप है बहुत ही खूबसूरत पेट्रोल पंप है।

लाल कलर की पट्टी है नीचे छाते लगे हुए हैं।

मैदान के बगल से कच्ची सड़क गई हुई है।